वे टेबल में कुछ सामान रखा हुआ है।

एक इंसान दिखाई दे रहा है।

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये कार सब दिखाई दे रहा है।

फिर व्हाइट कलर का वाल दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में बैलून दिखाई दे रहा है फिर पर्दा सब दिखाई दे रहा है।

एक पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर दिखाई दे रहा है।

एक फ्लोर दिखाई दे रहा है व्हाइट और ब्राउन कलर में।

और लाइट भी दिखाई दे रहा है।

कुछ ट्रक सब दिखाई दे रहा है फिर पेड़ सब दिखाई दे रहा है।

ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में रोड में इंसान लोग दिखाई दे रहा है साइकिल चला के।

फिर घर सब भी दिखाई दे रहा हैं।

और एक ठेला दुकान दिखाई दे रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है।

फिर कैलेंडर दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में वैन दिखाई दे रहा है।

फिर एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है फिर ग्लू भी दिखाई दे रहा है।

ये एकेडमी का सिंबल भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में पेड़ सब दिखाई दे रहा है।

ये रोड भी दिखाई दे रहा है।

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

यहां हमें इंसान दिखाई दे रहा है।

फिर पहाड़ दिखाई दे रहा है फिर पेड़ सब दिखाई दे रहा है।

ई स्विच बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

फिर रोड में साइकिल्स चल रहे इंसान लोग।

फिर दो कार दिखाई दे रहा है फिर ऑटो दिखाई दे रहा है।

बाइक सब दिखाई दे रहा है।

फ़िर लाइट भी दिखाई दे रहा है।

बोडी ब्रश भी दिखाई दे रहा है।

फिर डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है फिर टॉवेल भी दिखाई दे रहा है।

फ्लावर्स भी दिखाई दे रहा है।